यह एक न्यू हाउस है जहां पे नए-नए सामान मिलता है जैसे बहुत समान हो गया यहां पे लाइटिंग उटिंग है।

पेड़-पौधे हैं एक व्यक्ति है जो च हेलमेट पहनकर खड़ा है इसके अगल बगल गाड़ी उड़ी खड़ा है | फोर व्हीलर दू चक्का ।

घर में बल्ब अ पंखा-उंखा चलता है एक सुपरवाइजर है जो कैप पहन के खड़ा है अच्छा लग रहा है आप --

यहाँ पे एक घर है घर को चारों तरफ से --

बहुत लोग आए हैं साड़ी-उड़ी पेहेन के फ्रॉक पेहेन के जो यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं डांस प्रतियोगिता है यहाँ पे और --

यहाँ पे जमीन को खोद के यहाँ पे पेड़ लगाया जाएगा और उसको पौधा बोला जाता है छोटे में बड़ा होने पेड़ बोला जा --

खाना खाने के लिए और इस होटल के ऊपर मे --

इशमें भेड़ बकरियां रखने वाले घर बनाया गया है जो चारों साइड से घेर दिया है।

इसमें एक व्यक्ति है जो लेडिस है वो काफी खूबसूरत है वे साड़ी पहन के खड़ी है।

ने बालों को कटा हुआ देखता है और इसके बा अगल-बगल में बोर्ड लगा हुआ है और एक अ शी शीशे का --

एक क्लीनिक है जहाँ पे आज मेडिकल भी बोला जाता है यहाँ पर दवाई मिलता है अच्छा डॉक्टर आता है और अच्छे-अच्छे इलाज के लिए अच्छे बीमारियां भी होते है यहाँ पर --

और बेड के ऊपर एक बल्ब है बल्ब के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है जो च ठंडा देता है पंखा से औ बल्ब से।